और सामने में एस_बी_आई लिखा हुआ बड़ा में जो ब्लू और व्हाइट कलर में है।

तथा यहां पे इसी के बगल मे एक और बोट है जो की हल्का व्हाइट कलर का है वो भी लोहे के मदद से बनाया गया है जिसके ऊपर जंग हल्का हल्का लगा हुआ है।

और यहां पे बगल में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं नीचे।

यह एक पहाड़ का दृश्य है जोकि यहां पे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थल और सामने पत्थल पहाड़ दिखाई दे रहे--

जो ब्लैक और हल्का ब्राउन कलर में हैं और उसका ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हुए दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के हैं।

यह एक कार का दृश्य है जोकि पीला कलर का है।

यह एक दुकान का दृश्य है पेंट दुकान--

और यहां लकड़ी के मदद से रैक बनाए गए है जिसके अंदर कई प्रकार के समान है।

छोटे पौधे का दृश्य है तथा यहां पे बहुत सारे छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और पीछे बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे भी हैं जोकि ग्रीन कलर का है और ऊपर से आसमान का दिखाई दे रहा है।